एक ठन देखत आय एहो एक ठन बैंक के एक ठन पेमैंट खाता खुलके पैसे जमा कर सकुल ह और निकल सकूलहा एक ठन पैसा सुरक्षित रहे कुछ नई होए ए ठन--